वाओ यह तो एक पार्क है। जहां‌‌ पर हर तरीके के झूले है।

यह एक मंदिर है जहां पर लोकबाग दूर-दूर से पूजा करने आते हैं।

एंड यहाँ पर लोग बाग सुबह को सुबह-शाम योगा करने को एंड दोड लगाने जाते है। और यह ग्राउंड बहुत ही क्लीन --

वाओ ये डेकोरेशन कितनी सुंदर लग रही है।